कुरकुरों के पास बॉक्स भी रखे हुए हैं।

उसमें से पानी भी बहकर जा रहा है।

मुर्गी फार्म में बहुत सारी लाइट्स भी लगी हुई है।

सजावट का सामान रखा हुआ है यहां पर--

अच्छी अच्छी लाइट्स भी लगी हुई है ।

यह एक स्विंगिंग पूल है।

पहाड़ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यह एक महिंद्रा शोरूम है।

यह एक ऑफिस है।

गाड़ी के उस साइड एक बिल्डिंग भी है।

दुकान में लाइट भी लगी हुई है।

एक छोटा खजूर का पेड़ भी है।

मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है उसका नाम राजपूत रेस्टोरेंट है।

के पश्चात कोई--

मैं यहां एक कराने की दुकान देख सकता हूं।

और एक साइकिल भी चल रही है।

यहां पर एक लड़की है।

जिसमें पंखा भी लगा हुआ है।

धर्मशाला में लाइट भी लगी हुई हैं।